और सभी कारे टोयोटा ब्रांड की है।

यहाँ एक बड़ा सा मैदान है।

फल की दुकान में लाइटें जल रही है।

पक्छी हैं जो नाव के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें आइडियल कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है।

चारों एक ही दिशा में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

और इसके जमीन पर बहोत सारी एक कतार से मोटरसाइकिल लगी है।

दो आदमी है जिसने जैकेट डाल रखा है।

यह सारी वाशिंग मशीनें टॉप लोडेड नहीं है बल्कि --